जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां पे तीन बोतल भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इसके सामने एक --

बाल्टी भी रखी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि चाय की दुकान में एक व्यक्ति भी है जैसे कि मैं देख --

जिसने नीले कलर का कमीज और ब्लैक कलर का पैंट पेहना हुआ हैं जैसे की मैं देख --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक हॉल है जो पिंक ब्राउन और वाइट कलर का है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस हॉल में तीन दरवाजे भी --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ के यहां पे एक बच्चा हैं जिसने सफेद कलर का कमीज और लाल कलर का पेंट पेहना हुआ हैं --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ एक नीले कलर की ट्रैन बी हैं जैसे की --

स्कूल के चारों ओर पेड़ लगे हुए है जैसे कि मैं देख पा रही हूं स्कूल के चारों ओर घर भी है जैसे कि मैं देख --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस फील्‍ड के सामने से एक सड़क गई है जो कच्‍ची है जैसा से कि मैं देख पा रही हूँ कि इस फील्‍ड में कुछ लोग भी हैं।

पा रही हूँ कि इसके सामने एक घर भी है जो वाइट कलर की है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आस-पास में बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

जैसे कि में देख पा रही हूँ कि यह एक झील है जैसे कि में देख पा रही हूँ झील के बगल में एक जंगल भी है जैसे कि में देख पा रही हूँ झील के चारो और पेट ल--

पिंड भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां एक व्यक्ति भी है जिसे सफेद कलर का कमीज पहना हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि यहां एक ट्रेन है जो ब्लू और व्हाइट कलर का हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां कुछ लोग भी हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि यहां--

जैसा कि में देख पा रही हूँ इस सैलून का कलर वाइट है जैसा कि में देख पा रही हूँ यहां दो बच्चे भी बैठे हुए --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस फिल्म एक साइकिल भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस फिल्म में एक व्यक्ति भी है ज--

जैसा कि मैं समझ पा रही हूं कि यह इवनिंग का शमय --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यह एक तलाब है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस तलाब में बहोत भीड़ है जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ।

जैसे कि मैं समझ पा रही हूं कि यह सुबह का समय--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ एक महिला हैं जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पेहनी हुई हैं जैसे --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इसके आसपास काफी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस झील के सामने एक सड़क भी है जैसे कि मैं --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यह एक हिरन है जैसे कि मैं देख पा रही हूं की इस हिरण के कलर ब्राउन है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इसके सामने दीवार भी है जो हरे कलर की है।

ती है जिसने हेलमेट पहना हुआ है।

पैन में हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ इस रेस्टोरेंट में काफी सारे शीशे लगे हुए हैं --

पा रही हूं यहां दो पेड़ भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां ईंट की दीवार भी है।

पा रही हूं उसके सामने ग्रीन कलर के घर भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां एक लकड़ी की गेट भी है जैसे कि --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पांच लोग हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं इसमें दो महिलायें हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं उसमें से एक महिला ने नीले कलर की साड़ी पहने--

जैसे की में देख पा रही हूं कि इस फील्ड के चारों ओर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

पा रही हूं इस बैंक के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसने व्हाइट कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस दुकान में अलमीरा बना हुआ है जो शीशे का है।

जैसे कि मैं समझ पा रही हूं कि यहां एक भी व--

हुईं यहां बहोत सारे दुकानें--